यहां पे किराना की शॉप है जहां पे काफी सारे--

पैकेट वाले कुरकुरे हैं टंगे हुए हैं यहां पर काउंटर पे फप्सी वगैर बॉटलों में रखी हुई है और--

चॉकलेट आती है ऊपर बिस्किट वगैरह रखे हुए हैं यहां पे काफी सारा सामान रखा हुआ हैं।

यहां पे एक बच्चा खड़ा किया गया है फूलों के बीच में यहां पे काफी सारे फूल लगे हुए हैं।

और पीछे साइड एक पेंड है कांटेदार वो पेड़ है मोटा पेंट लग रहा है ।

और दो चारों साइड यहां पे फूलों के पौधे लगे हुए हैं फूल ये ऑरेंज कलर का फूल फूला हुआ हैं।

फूलों के पौधे लगाए गए हैं जो कि फूलों के फूल रहे हैं पीले-पीले फूल यहां पे फूले हुए हैं कुछ वाइट फूल है और यहां पार्क बनाया गया है जहां पे--

यहां पे खूब सारी भीड़ लगी हुई है जहां पे काफी सारे लोग हैं।

और महिलाएं पुरुष सभी यहां पर है ।

जैसे बने हुए हैं बहुत सारे यहां पे मंदिर बने हुए है ।

यहां पे बच्चे ड्रेस में हैं अ लड़कियां हैं जो ड्रेस में हैं और बैग पीछे बैग टंगे हुए है ।

यहां पे जेंट्स भी हैं काफी टीचर भी हैं महिलाओं में टीचर भी है ।

कई कलर के कपड़े यहां पे एक महिला पहनी हुई है ।

कार को हम्म पैक यहां पे कार का जो गेट है उसको पकड़े हुए खड़ा हुआ है यहां पर नई कार खड़ी हुई है ।

इसके पीछे एक किसी चीज की बहुत बड़ी एजेंसी बनी हुई है ऐसे लग रहा है जैसे कार एजेंसी हो--

वाशिंग मशीन है प्रेस है और भी इलेक्ट्रिक का काफी सामान यहां पर रखा हुआ है ।

यहां पे सोलर लगा हुआ है जिसे सोलर क लाइट कहते हैं सोलर जो लाइट बनाने वाला होता है जो धूप से बैटरी बनाता है वह लगा हुआ है।

लगे हुए हैं यहां पे एक हम्म घर बना हुआ है उसके ऊपर सोलर लाइट लगाई गई ।

यहां पे बहुत सारी बुक और कॉपी रखी हुई हैं।

और भी काफी सारा सामान पीछे यहां पे रखा हुआ है सामने एक बड़ी सी कुर्सी रखी हुई है ।

यहां पे चारों साइड काफी सारा सामान रखा हुआ है ।

यह तार की दुकान है जहां पर काफी बिंडलों में केबल और तारें पैक की रखी हुई है ।

और सामने यहां डांस करने के लिए थोड़ा सा बना हुआ है ।

काफी भी यहां पे बक्स से डी_जे वाले रखे हुए हैं बना के रखे गए है ।

ये मछली बाजार है जहां पे काफी सारी मछलियां रखी हुई हैं और यहां पे--

यहां पे वाटरफॉल का सिस्टम बनाया गया है जिसे--

इसमें से मछलियां लग रही हैं और इसका बेहद खूबसूरत नजारा यहां बनाया गया हैं।

और चारों साइड यहां पे पेंड दिख रहे हैं पार्क पेड़ यहां पे लोग भी दिखाई दे रहे हैं दो चार--

और इस रिक्शे के दोनों साइड दो लोग खड़े हुए हैं।

एक इधर खड़ा हुआ है और एक उधर खड़ा हुआ है और यह बैटरी वाला रिक्शा लग रहा है ।

लोग लड़कियां हैं जेंट्स है सभी खाने खा रहे है ।

एक आदमी अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है जो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है यहां पे एक स्कूटी और एक बाइक खड़ी हुई है ।

यहां पे हम्म शराब की बनी हुई है यहां पे वाइन शॉप लिखा हुआ है यह वाइन शॉप है ।

इसका गेट बना हुआ है जाली वाला गेट बना हुआ है जो खुला हुआ है और दुकान के अंदर एक आदमी दिख रहा हैं।

यहां पे अगल-बगल भी एक दो दुकानें बनी हुई हैंछोटी-छोटी--

यहां पे पैलेस है जहां पे काफी अच्छी सजावट की गई है यहां पे काफी अच्छी झूमर लगाए गए हैं।

यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है ऊपर फैन लगी हुई है दूसरी साइड भी बैठने के लिए टेबल रखी हुई है टेबल बनी हुई है रखी हुई है।

और एक सामने पर्दा दिख रहा है और यहां शीशे में एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि खड़ा होगा शीशे में दिखाई दे रहा है।

दोनों घर के गेट दिखाई दे रहे हैं एक गेट बड़ा दिखाई दे रहा है दूसरे घर के गेट छोटे-छोटे हैं बट बड़े हैं और ये तीन-चार मंजिले के घर बने हुए हैं यहां पे तारें दिख रही हैं।

सामने यहां पे काफी मैदान भी पड़ा हुआ है कछड़ा भी पड़ा हुआ है।

यहां दो-तीन पेट्रोल पंप मतलब बने हुए हैं एक और सामने छोटे-मोटे घर पीछे साइड भी बहुत बड़ा यहां पे कुछ बना हुआ है।

यहां पे उम ऑफिस है जहां पे काफी कुर्सियां रखी हुई है किसी चीज का--

सामने छोटा सा काउंटर रखा हुआ है काउंटर में एक बुक रखी हुई है।

और भी कुछ जरुरतिंग की चीज छोटी-छोटी काउंटर में रखी हुई है।

यहां पे चीनी मिट्टी के कुछ अ कई आकर के यहां पे बना के रखे गए है जैसे की--

यहां पे रास्ता है जो कि कच्चा रास्ता लग रहा है।

यहां पे काफी सारा सामान काफी मशीनें रखी हुई हैं ऐसे लग रहा है जैसे कि यहां पे--

किसी डॉक्टर का सारा सामान यहां पर रखा हो य क्लीनिक टाइप में लग रही है ऊपर पंखे-वंखे भी लगे हुए हैं सामने गेट है कांच वाले गेट हैं।

व गेट खुला हुआ है बगल में यहां पे एक मकान भी बना हुआ है।

और रोड है आगे रोड है सामने गेट सामने रोड है यहां पे काफी टू टायर भी टंगे हुए हैं।

यहां पे पता नहीं क्या बना हुआ है।

जहां पे कुर्सी बैठक की रखी हुई है।

कुछ उड़े ऐसा लग रहा है जैसे कोई लेटा हो यहां पे उड़ के लेटा हुआ हो सो रहा हो।

यहां पे वो काफी वाशिंग मशीन और फ्रीज --

एल_ई_डी टी_वी रखी हुई हैऔर यहां पे--

गोल गोवा विथ गुल्स ऐसी कुछ बुक रखी हुई है।

सामने कार्टून रखे हुए हैं बड़े-बड़े कार्टून रखे हुए हैं एक कुर्सी रखी हुई है।

और भी कुछ दिखाई दे रहा है कार्टून के ऊपर--

और कोट वगैरह हैं यहां पे जेंटसो के कपड़े हैं जेंट्स के पेंट काफी रखे हुए हैं।

यहां पे बच्चों के सामान रखे हुए हैंपढ़ने लिखने वाले पेन पेंसिल कलर और भी काफी सारा सामान यहां पे रखा हुआ है।

और यह है लाइन्स सजा हुआ है जिसमें से पंदरा बिस लड़कियां डांस कर रही हैं।

और यहां पे काफी सारे गुब्बारे लगाए गए हैं रंग बिरंगे गुब्बारे यहां पे लगे हुए हैं दीवार में सजावट की गई गुबारों से--

कोई समरोह चल रहा है यहां पे रंग बिरंग के कपड़े पहने लड़कियां डांस कर रही हैं।

यहां पे कुछ बना भी हुआ दीवाल में भी कुछ लगा हुआ है पेंटिंग भी की गई है।

एल_ई_डी टी_वी दीवार में लगी हैउसके द्वारा समझा रहा है।

ये शॉप है जिसमें से काफी सारे ड्रेस टंगे हुए हैं बच्चों के जेंसों के महिलाओं के यहां पे बच्चे जेन--

रिजल्ट है और बच्चों के भी शायद हैं।

बच्चे और यहां पर काफी लोग हैं बच्चे हैं जिनसे घूम फिर रहे हैं लाइटिंग वगैर लगी हुई है मॉल है ये--